सामने एक स्टोर है। स्टोर में बोहोत सारा सामान रखा हुआ है। साइड में कुछ घड़ियाँ रखी हुईं हैं।

पानी में पेड़ों की परछाई दिख रही है बहोत सारे हरे-भरे पेड़ नज़र आ रहे है कुछ घास-फूँस भी नजर आ रही है।

सामने एक वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम में कुछ आदमी खड़े हुए हैं। कुछ लो आदमी बैठे हुए हैं। वेटिंग रूम पर व्हाइट पेंट हो रहा है। कुछ पेड़ नज़र आ रहे हैं।

एक दुकान है। दुकान का शटर बंद है। दुकान पर ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुईं हैं।

कुछ प्याज के स्लाइसेस रखे हुए हैं। एक पनीर का फ्राई टुकड़ा रखा हुआ है।